यहा एक मछली बाजार है जहा पर मछलिया रखी हुई है यहा एक लेडिस और एक जेंट्स दोनो मिलकर मछली बेच रहे है।

यहाँ एक एल.जी. टी.व्ही. की शॉप है जहां पर बहुत सारी टी.वी. रखी हुई है टी.वी. का रंग काला है।

यहाँ सुंदर सा आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग पीला और सफेद नजर आ रहा है इसमें पेड़ लगे हुए हैं पेड़ों का रंग हरा नजर आ रहा है।

बल की लाइटे नजर आ रही है जो की सफेद रंग की दिखाई दे रही है पीछे टावर दिखाई दे रहा है।

यहां एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है जो कि मो मोबाइल में देखती हुई नजर आ रही है इसने पर्पल रंग का टॉप पहना हुआ है काले रंग की जीन्स पहनी हुई है।

सामने एक कुर्सी रखी हुई है जो की वाइट रंग की है इधर एक बेंच लगी हुई है जिसका रंग नारंगी नजर आ रहा है।

यहा एक लेडिस खड़ी हुई है जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है सामने दीवार नजर आ रही है दीवार का रंग गुलाबी नजर आ रहा है नीचे जमीन पर हरी घास दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे हैं सामने दीवार पर भी बलून्स लगे हुए हैं और एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है --

गाड़ी में ऊपर वाइट रंग की पट्टी दिखाई दे रही है।

कटोरिया दिखाई दे रही है जिनका रंग सफेद नजर आ रहा है बाउल का रंग भी --

यहां दो मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं यहां छत पर कुछ कार्य कर रहे हैं इन्होंने--